अनेक तरह का सामान मिलता है गाइस देख रहे होंगे कितना ही मजेदार सीन है ये बहुत ही अच्छा है गाइस ।

हेल्लो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि एक मंदिर है देखिये कितना सारा धूम धाम से मंदिर में पूजा करने के लिए वर्क हो रहा है बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। गाइस आप लोग देख सकते हैं की बहुत ही गजब का हो रहा है।

सब लोग देख रहे हैं नदी कितना बढ़िया है नदी बहुत ही गजब का लग रहा है दिखने में देखिये इनके पीछे मंदिर सब कितने सारे हैं बहुत ही बढ़िया मंदिर सब हैं।

पार्किंग है गंदगी नई है फोटो स्टैंड का बढ़िया बहुत गजब का है बहुत ही बढ़िया है। देखिये आप लोग यहाँ देख रहे है नया --

ये देखिये कितना मस्त है। यो अयोध्या का लग रहा है मुझे सीन । लेकिन गाइस आप भी लोग लगाईये अंज़ादा ये कहाँ का सीन है। बोहोत ही मस्त सीन है लेकिन जहाँ का भी है गाइस बोहोत ऑसम सीन --

हेल्लो गायस आप देख रहे होंगे देखिए कितना बढ़िया फ्लैट दिख रहा है। बोहोत ही गजब का है बोहोत ही अच्छा दिख रहा है देखिये आप देखने में कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है बोहोत ही मस्त है।

हेल्लो गाइज आप लोग देख रहे हो घड़ी या एल.ई.डी सबको दुकाने फ्रीज मोबाइल सब कुछ यहाँ मिलता है। बर्तन स्पीकर और मिल रहा है। जिस पर आप कोई भी सामान किस्त पर ले सकते हैं। उसके पास ले जाने के --

लोग देख रहे होंगे कि इस कॉलेज की फोटो दिखा रहा हूँ। देखिए कॉलेज में कितना सारा भीड़ हैं। देखिए कितना ही बढ़िया कॉलेज है। कॉलेज का ग्राउंड देखिए कितना ही गजब का है।

हैलो गाइस आप लोग देखिये मॉल कितना । मॉल का नाम है। बोहत ही समान सस्ते दाम में मिला जाता है और अच्छे प्राइज में खरीदा जाता है | आपलोग को भी चहिये ज़रूरत होगा तो यहीं से लीजियेगा |